साइड मे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है उसने बनियान पहन रखी है सामने नीचे जमीन ब्राउन कलर मे दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो की ब्लैक नई दिखाई पड़ रहा है पीछे आसमान का कलर व्हाइट कलर मे दिखाई पड़--

सामने दो छोटी बच्चियां खड़ी हुई है उनके हाथ में मोबाइल मोमबत्ती पकड़ रखा है जोकि ऑरेंज कलर मे चमक रहा है सामने एक आदमी आ रहा है जो की शॉल लपेटे हुए है।

सामने एक ब्लैक कलर का जूता दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ ग्रीन कलर की चट्टान पे ग्रीन कलर की काई दिखाई पड़ रही है सामने कुछ सूखे पत्ते जैसा भी दिखाई पड़ --

ढलान जैसा बना हुआ है जोक ग्रे कलर मे है सामने एक आदमी खडा हुआ है उसके हाथ मे मोबाईल फोन है वो उसने ब्लू कलर की टि शर्ट पहेन रखी है।

सामने कुछ येलो कलर का झालर जैसा लटका हुआ है समनमे कुछ अ द्वार ब्राउन कलर मे दिखाई पड रही है साइड मे ग्रीन कलर का दिख रहा है।

एक लेडिज है जिसमे और दो खुरसी खाली दिखाई पड़ रही है जोक रेड कलर मे है पीछे कुछ क्रिस का साइड बना हुआ है जोकव ब्राउन कलर मे दिखाई पड़ रहा है साइड मे एक लोहे का रोड जैसा खड़ा हुआ दिखाई पद रहा है।

सामने बोहोत सारी बाइक खड़ी हुई है | जोक ब्लैक कलर मे दिख रही है सामने एक ब्लू कलर की स्कूटी खड़ी हुई है सामने एक हेलमेट के आगे का हिस्सा दिख रहा है जोक ब्लैक कलर मे दिख रहा है।

सामने छत पर एक मकान जैसा बंता हुआ दिखी पड़ रहा है दीवार ब्लैक कलर रेड कलर मे दिख रही है सामने बालू का टीला जैसा दिख रहा है जूके ग्रे कलर मे दिख रहा है और साइड मे कुछ ईटे पड़ी हुई है जूके ऑरेंज कलर मे दिखाई पड़ रहे है।

सामने एक स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है एक आदमी जाते हुए दिख रहा है नीचे रोड ग्रे कलर और ब्राउन कलर मे दिखाई पड़ रही है।

सामने कमरा दिखाई पड़ रहा है यह बहोत बड़ा हॉल की तरह दिख रहा है यहाँ पे सामने कुछ लोग योगा कर रहे है और यहाँ पर सामने मेट बिछा हुई है सभी लोग मेट पे बेठ कर योगा कर रहे है कुछ लोग खडे हुए है।